और होटल का क्या नाम है सर होटल गायत्री पैलेस ।

भी यहां पे नीचे एक सिलिंडर रखी हुई है अतुल कह के यहां पे टेंपू है यहां बस पड़ा है बस चल जाती है यहां से अपने-अपने जगहो पे बस बैठते है यहां --

औ-अ-और सामने एक बहुत अच्छी सी मू-मंदिर भी हैं मनोरम दृश्य --